एक कलरफूल साड़ी पहना है दो लड़के है साथ मे डास कर रहे हैं एक लड़का बीच मे खड़ा है व्हाइट शर्ट पहना हुआ है एक गोल्डन कुर्ता--

पिंक कलर का घर है जो पिक कलर से पेंट है बदल है

कलरफूल फ्लावर से डेकोरेट है एक लड़का स्काई ब्लू कलर का कुर्ता पहना है ब्लैक और ग्रे जैकेट पहना है पीछे एक लड़का खड़ा है दो बाइकें खड़ी हैं एक बाइक पे --